लाइट्स पूरा खुले हुए खुला हुआ है और मुझे कोई इंसान नहीं दिख रहा है।

पीछे बहोत सारे पेड़ पौधे और कुछ घर भी दिख रहे है।

यह मुझे एक फोटो दिख रहा है जिसमें एक लड़का सेल्फी ले रहा है शायद वो चोर है क्योंकि घर का ताला तो पूरा अच्छी तरह से बंद है और वह सोच रहा है कि अब इस घर को कैसे चुराए।

गेट में बहुत सुंदर डिजाइन है और दो ताला लगा हुआ है।

इसके पीछे मुझे एक पहाड़ दिख रहा है।

और आसपास में मुझे एक झोपड़ी भी भी दिख रहा है।

अंदर जो मुझे दिख रहा है वह एक रेस्टोरेंट का फोटो रेस्टोरेंट में मुझे बहुत सारे टेबल और चेयर दिख रहा है।

इस फोतो को देख के मुझे लग रहा है कि ये एक स्टेशन है जिसमें बहुत सारे रिक्सा वाले अपना रिक्सा लेके खरे हैं।

बहुत सारी पैसेंजर भी दिख रहा है जो रिक्शा के ऊपर भेजना चाहते हैं।

सामने एक फेंसिंग भी है जिसमें बहुत सुंदर से अलग अलग कलर के कपड़े टंगाया हुआ है।

इसमें मुझे एक बहता हुआ सुंदर नदी दिख रहा है उसके बीच में बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है।

इस फोटो में मुझे एक घर दिख रहा है इसकी रंग सफेद है।

उसमें लगा बहुत सारे प्लांट्स भी दिख रहा है।

और सामने मुझे बहुत सारे अअ टायर से बना हुआ पोट भी दिख रहा है।

सामने जो फोटो है वह एक क्लास रूम का फोटो है जिसमें मुझे बहोत सारे बच्चे दिख रहे हैं इनमें से बहोत सारे बच्चे मुस्लिम है क्योंकि लड़कियां हिजाब पहना हुआ है और लड़के मुस्लिम वाले टोपी पहना हुआ है।